और यहा पर एक व्यक्ति भी नजर आ रहा है और नीचे की और फर्श पर चटाई बिछी हुई है और ऊपर की और भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हुए है।

आ रहे है और आजू बाजू पेड़ भी लगा हुआ है एक व्हाइट कलर की मोर है मोर मे बहुत सारे फूल नजर आ रहे है अंदर खुच वेकती बैठे हुए है कुर्सीओ--

और यहाँ पे बैठक वेवस्था के लिए कुछ कुर्सिया भी रखि हुई है और पीछे की और बड़ी सी बिल्डिंग बनि हुई है और यहापर कुर्सीओपर बोहत सारे वेक्ती भी बैठे हुए है कुछ वेक्ती आ जा रह--

और मुर्गे कों कैद करके रखा हुआ है और यहा बिचो बीच मे एक रास्ता बना हुआ है जो की बहुत लंबा दिखाई दे रहा है।